और बिल्डिंग्स दो दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग का कलर ऑरेंज है और दूसरी बिल्डिंग का कलर पिंक है और नीचे कुछ लोग खड़े हुए है।

स्टेचू को अ चारो और से ग्रिल से घेरा हुआ हैगा उसके पीछे एक बिल्जली का खम्भा लगा हुआ है उसमे लाइटे भी लगी हुई है आस पास काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।